--बजता है ये रात रात कहीं कुछ प्रोग्राम में जा रहा है बोहोत ही अच्छा इसका साउंड बोहोत ही मस्त लगता है एक नंबर बोहोत ही अच्छा--

बहुत छोटा होता है बहुत ही अच्छा कुत्ते है न मका मारते है उनका सिंग पेड़ पोधा के जैसा होता है।

यहाँ पर खेल का सामान रखा हुआ है बेडमिण्टल है बोल है फूटबोल है जुत्ता है शूज है ड्रेस है बेग है बहुत ही अच्छा--

बहुत ही देखने में सुंदर दिख रहा है और बिक्री बाट से उचित मूल्य पर ग्राहकों को दिया जाता है बहुत ही अच्छे एम_आर_पी से एक रुपये ज्यादा नहीं लेता है।

मेरे गऊ माता को बोहोत ही सही सावधानी से पारा जाता है बोहोत ही मस्त खाना पीना पोसन पालन होता हैं।

-- और डेली दो दो लिटर दूध को हम लोग खाते है बोहोत ही अच्छे--

यह गेंदा फूल जो बोहोत ही अच्छा है बोहोत ही सु-सुंदर है बोहोत ही मस्त गेंदा फूल हैं ।

कला अंगूर का स्वादिष्ट बहुत अच्छा है यह कहीं बड़े शहरों या कहिं ब्रांच में पर अपने फलता है पेड़ में फलता है बहुत ही अच्छा स्वादिस्ट लगता हैं।